creating dummy content पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम devel module उपयोग करके dummy कंटेंट बनाना सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu operating system drupal 8 और firefox वेब ब्राउज़र आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं
drupal site बनाते समय हमें एक चीज़ की ज़रुरत है जो है बहुत सारा कंटेंट यह हमारी layouts views और designs को समझने में मदद करेगा
आदर्श रूप से हमें वास्तविक कंटेंट नहीं उपयोग करना चाहिए मानिये हमें एक कंटेंट type या एक field बदलने की ज़रुरत है
समस्या ये है कि हमें इसमें जाना पड़ता है और वास्तविक कंटेंट को edit करना पड़ता है
लेकिन यह step बहुत महत्वपूर्ण है हमें अपने कंटेंट के प्रकार को जाँचने की ज़रुरत हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा वे काम कर रहे हैं या नही
अभी तक हमने fields के कुछ प्रकार ही कवर किये हैं
यहाँ हमारा cincinnati node है cincinnati group meetings के लिए शुल्क चाहता है
औए वे इसको site पर रखना चाहते हैं
हम पैसे के लिए decimal या एक integer जो कि पूर्ण संख्या whole number है उपयोग कर सकते हैं
मानिये आप एक integer चुनते हैं क्योंकि उन्होंने केवल 10 dollars charged किये लेकिन बाद में उन्होंने 1099 dollars charged करना निश्चित किया
फिर हम मुसीबत में हैं
एक integer को decimal में नहीं बदला जा सकता ख़ासकर पहले से ही कंटेंट जोड़ चुकने के बाद
और इसलिए ये वो चीज़ें हैं जो पहले ही planned करने की ज़रुरत है
हम कुछ झूठे कंटेंट उपयोग करके यह सब जाँच सकते हैं ये आसानी से प्रविष्ट और आसानी से डिलीट की जा सकती हैं जब हमने अपनी जाँच पूरी कर we हो
याद रखेंहमें सैंकड़ों वास्तविक कंटेंट्स की ज़रुरत नही है लेकिन केवल कुछ झूठे कंटेंट
इस समस्या का हल है devel module drupal org/project/devel पर जाएँ
अभी तक हमने modules या हमारी drupal website के विस्तार के बारे में वास्तव में बात नहीं की है हम यह आगे आने वाले tutorials में करेंगे
लेकिन यहाँ हम devel module संस्थापित करना और इसे उपयोग करना सीखेंगे यह हमें इसकी शक्ती का थोड़ा अंदाज़ा देगा जो drupal modules हमें दे सकते हैं
नीचे तक जाकर download section पर जाएँ यह screen आपके लिए बहुत अलग भी दिख सकती है
drupal 8 dot x version हरे क्षेत्र में हो सकता है इसलिए निश्चित कर लें कि आप उस वाले पर click करें
यदि नहीं तो development release पर click करें
अब इसे करने के दो तरीके हैं हम इसे download कर सकते हैं लेकिन वह हमें हमारे desktop पर बहुत we अनावश्यक files देगा
या हम राईट click कर सकते हैं और हमारे browser के आधार पर हम copy link या copy link location में से एक देखेंगे
किसी भी एक तरीके में tar file या zip file पर click करें लेकिन इस dev file पर click न करें क्योंकि वो कार्य नहीं करेगी
ये वास्तविक files के लिए links हैं
एक बार हमें मिल जाये तो अपनी site पर वापस आएं extend पर और फिर install new module पर click करें
अब install from a url field में url paste करें यदि आपके पास अच्छा internet connection है तो आप url से संस्थापित कर सकते हैं
अन्यथा आपकी सहूलियत के अनुसार वो devel package इस package पर code files link में दिया गया है
यहाँ choose file विकल्प उपयोग करके कृपया इसे download करें और upload करें अंततः install पर click करें
अब enable newly added modules पर click करें
इसे minimize करने के लिए शब्द core पर click करें फिर नीचे जाएँ
development block में हम devel और devel generate देख सकते हैं अभी के लिए अन्य पर ध्यान न दें
devel और devel generate को check करें फिर नीचे तक जाएँ और install पर click करें
drupal में याद रखें कि हमें हमेशा निश्चित करना है कि हम save install आदि पर click करें
हमें यहाँ एक हरा message मिलना चाहिए2 modules have been enabled
चिंता न करें यदि आप लाल रंग में कोई भी सावधानी message देखते हों जब तक यह कोई गंभीर error न हो
कंटेंट का पूरा समूह बनाने के लिए configuration पर click करें फिर बायीं तरफ हम generate content link देखेंगे उस पर click करें
अब आवश्यक जाँच करने के लिए हम जितना भी चाहते हैं उतना कंटेंट बनाने में सक्षम होंगे
हम events और user groups चुनेंगे क्योंकि यह we दो content types हैं जो हमें जाँचने की आवश्यकता हैं
यहाँ ध्यान दें delete all content in these content types before generating new content है यह झूठे कंटेंट को डिलीट करने के लिए है
अब वहाँ check करते हैं और 0 nodes बनाते हैं यह सारे events और user groups को डिलीट करेगा
यह उन्हें भी सम्मिलित करेगा जो हमने अपने आप बनाये उदाहरण के लिएहमारा cincinnati user group भी चला जायेगा यदि हमने यह किया
अतः इसे अनचेक करते हैं अब 50 nodes बनाते हैं
एक year पीछे जाएँ
हमारे पास अपने nodes पर comments नहीं हैं
maximum number of words in titles को बदलकर 2 करें यदि आप यह नहीं करते हैं तो वह बहुत लम्बा lorem ipsum text बनाएगा
generate पर click करें तुरंत ही हमें एक सफलता message मिलता है to लगाने के लिए कि यदि इसने कार्य किया content पर click करें
यहाँ 50 नए nodes की सूची हैआधे events और आधे user groups
किसी भी एक पर click करें और हम देखेंगे कि devel ने बनया हैdescription में बहुत सा text एक event logo
एक झूठी event websit एक date user groups में से एक sponsor की तरह चुना गया है और कुछ event topics चुनें गए हैं
अब हम अपने layouts अपने views और सारी अन्य चीज़ें कर सकते हैं जो हम अपनी site के साथ करना चाहते हैं
devel ने झूठा कंटेंट बनाकर बहुत समय को सेव करने में हमारी मदद की है
यह drupal की बहुत ही अच्छी विशेषता है जो एक module से दिया जाता है जो drupal org से downloaded किया जाता है ये contributed modules कहलाते हैं हम इसके बारे में आगे सीखेंगे
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने devel module उपयोग करके dummy कंटेंट्स बनाने के बारे में सीखा
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद